पानी में ही घास सब है फिर ऊपर में छोटा छोटा घास है।

यहां में छोटा सा अलमारी है

नीचे में बिसलेरी का बोतल है।

टेबल में कॉपी ये सब भी है।

यहां से बहुत ज्यादा ट्रांसपोर्ट लोग ट्रैवल कर रहा है।

ये फोटो में हमको एक ब्रांड न्यू कार दिखाई दे रहा है लाल कलर का

यहां में अलग अलग साइज का पेड़ है पौधा सब लगा के है।

हमें ये सब कपड़ा वो रखने के लिए कार्ड से बनाते हैं।

पीछे से बहोत लाइट्स आ रहे आगे से भी और आगे में व्हाइट से कुछ है।

यह में बहुत ज्यादा आदमी लोग आए हैं शेविंग सब कराने के लिए।